यहाँ पे सामने कुछ बिल्डिंग बनी हुई हैं और यह पे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और यह पे कुछ बाइक भी खड़ी हुई हैं सामने दो टंकी रखी हुई है ब्लू कलर मेंऔर यह पे--

ये कुछ ग्रीन कलर में है और ऊपर से आसमान दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर में दिख रहे है।